और ये पेट्रोल पम्प काफी बड़ा है।

यहां पे बहुत सारी ट्रेने रुकती हैं।

बाजार का चौक है यहाँ पे बहुत सारे--

लोग इस नृत्य को देखना पसंद करते है।

कांच के कप प्लेट गुलदस्ते की दुकान है।